यहाँ पे एक पेड़ है जो एलोवेरा का है आस-पास बहुत से पेड़ हैं जो काफी छोटे-छोटे हैं यहाँ पे एक बेंच भी पड़ी है आस-पास घर बने हुए हैं यहाँ पे लगी हुई हैं।